ये एक बहोत ही सुंदर और बहोत ही बड़ा रेस्टोरेंट है जिसमें--

बनाई हुई है और रात का समय है चारों साइड पे अंधेरा है जिम की सारी लाइटे ऑन है उसपे नाम भी लिखा हुआ हैं।

सेम कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई है नीचे निकरे पहनी हुई है सामने रेड कलर का बैग दिख रहा है।

और सभी बच्चों ने बुक्स जो है वो खोली हुई है टीचर --

ये एक बहोत ही बड़ा हॉस्पिटल है हॉस्पिटल बहोत ही बड़ी मंजिलों के साथ बनाया हुआ है।

और सामने सभी लोग बैठ के अरदास कर रहे हैं।

और सामने उनके टीचर बैठे हुए हैं पीछे बहोत ही बड़े बड़े अलग अलग तरह के पोस्टर लगे हुए हैं कोचिंग सेंटर का हाल बहोत ही बड़ा हॉल है।

बहोत ही सुंदर बड़े बड़े पहाड़ हैं बहोत ही दूर तक फैले हुए हैं।

और ये यहां पे और लोहे का बहुत सारा सामान जो कि सामने--

जोकि इसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं हॉल कि ये रूम है जिसमें सभी बच्चे लाइन --

और उनकी टीचर उनको चेक कर रही है।

और इसको भी गाड़ी को सामने से ले जाया जा रहा है सड़क सड़क में गाड़ी को--